ये जो मेरे सामने तस्वीर आयी है ये एक मंदिर की है। मंदिर बोहोत ही अच्छे तरीके सजाया गया है और यहां पे हम देख पा रहे हैं कि भंडारा भी चल रहा है जो --

और ये दिख्र पा रहे हैं हम ये मिट्टी के खेत में खड़ा है और आसपास बहोत सारी हरियाली भी दिख रही है। ये बहोत ही खुबसूरत नजा --

रोड है। वहाँ पे शोरुम बना हुआ है और ये दिखने ये काँच का है और यहाँ पे कुछ गमले के पेड़ रख पौधे रखे हुए है जिनमें फूल के पौधे लगे है।

अभी अभी जो ये मेरे सामने जो तस्वीर आ रही है छठ माता की पूजा की तैयारि यहाँ पे जोरो शोरो से चल रही है।